और यहां पे एक गंजी लड़की पैडियों पे खड़ी दिखाई दे रही है।

शीशे साफ करने का क्लीनर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर के अंदर एक बड़ा सा स्टेडियम दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर के अंदर एक मंदिर नजर आ रहा है।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

मूर्ति जमीन पर लेटी हुई नजर आ रही है।

और पीछे एक संतरी रंग की बास्केट भी नजर आ रही है।

यह तस्वीर एक शादी के फंक्शन की नजर आ रही हैं।

और संतरी रंग के कपड़े पहने यहां पे वेटर चलता हुआ नजर आ रहा है सफेद रंग की प्लेटें भी दिखाई--

एक सफेद और लाल रंग की बोटल में तेल नजर आ रहा है।

ये तस्वीर में एक व्यक्ति अह झोले की दुकान पर खड़ा दिखाई दे रहा है।

और इस पार्क में बच्चों के झूला झूलने वाली बहोत सारी स्लाइड दिखाई दे रही है यहां पे एक व्यक्ति--

व यहां पर एक लाइटिंग लैंप भी दिखाई दे रहा है यहां पर एक रोड भी नजर आ रहा है।

जिसके बाहर पर अह एस_आर फोर क्लिफ्टर्स दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर के अंदर हरी भरी घांस दिखाई दे रही है।

यहां ये व्यक्ति हाथ में कुछ लिए हुए दिखाई दे रहा है।

वह यहां पर लंबे कोर्ट का नज अ रंग--

इस तस्वीर के अंदर बहोत सारी गाड़ियां नजर आ रही है वह यहां पर एक हरे और पीले रंग का ऑटो भी जाता नजर आ रहा है।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

इस तस्वीर के अंदर एक पार्क दिखाई दे रहा है।

वे बाहर घर के बाहर बहोत सारे छोटे छोटे कपड़े सुख रहे है।

इसके सर पर कट के निशान दिखाई दे रहे हैं।